बहुत सारे फर्नीचर का सामान पड़ा है।

और वह बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में हैं।

जो की बहुत ही बड़ा है और--

ट्रक के बसेस के अलग अलग है और वहा पे एक ग्रीन कलर का--

और वहां पर झोले हैं उनके अंदर प्याज है।

और कुछ डिजाइनर है। कुछ सिंपल भी है। यहां पर बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई है और वेह चेयर्स पर--

अतीक अधिक आकार में मूर्तियां रखी हुई हैं और वह मूर्तियां अलग अलग आकार में और डिजाइन में हैं।

और वह कुछ फल वाले भी पेड़ लगे हुए हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के फल उगते हैं।

उसके ऊपर तीन डंडी लगी हुईं हैं उसके ऊपर--

जोकि वेह सब्जियां काट रही है।